यह एक फील्ड का दृश्य है जहां पर बहोत सारे कार लगे गए हैं।

एवं यहां पे दो लड़की भी दिखाई दे रही है।

जहां पर रेड कलर का लाइट एवं ब्लू कलर का लाइट लगा हुआ है।

पार्क का बाहर एक फील्ड भी नजर आ रहा है जिसमें छोटे छोटे घास लगे हुए हैं।

और यहां पे छोटे छोटे घास भी नजर आ रहे हैं।

एवं यहां पर अंदर में एक खिड़की भी नजर आ रही है।

तथा साइड में बहुत सारे प्लांट भी लगे हुए हैं।

और यहां पे एक पिलर भी लगाया गया है जिसके ऊपर एक टंकी नजर आ रही है।